यह एक छोटा मंदिर लग रहा है। इस मंदिर के आगे बाउंड्री खींची हुई वो सफेद कलर की है।

इस तरफ भी एक मंदिर बना हुआ है वहां पे बाउंड्री उसके बाहर खींची हुई है और यहां पर बहुत सारी चारपहिया खड़ी हुई हैं।

ए मज्जीद है। हरे और लाल रंग की पुती हुई है और लाइट्स भी जल रही है और कुबेर टाइम का मौसम लग रहा है और इस तरफ बाउंड्री खीची हुई है जो लाल सफेद कलर की है अ बहुत सारे पेड़ भी खड़े हुए हैं।

यहां पर भी एक गार्डन जैसा बना हुआ है और एक मेटि जैसी बिछी हुई है।

इस तरफ एक कुर्सी भी दो पड़ी हुई हैं कुछ आदमी आते जाते नजर आ रहे हैं।

और नीचे की तरफ एक बाउंड्री जैसे खींची हुई है और उसमें गेट भी लगा गेट के ऊपर पल्ली जैसी पड़ी हुई है चारों तरफ पेड़ भी दिखाई पड़ रहे हैं।

और आगे टीन में पड़ी हुई आसपास जालियाँ भी लगी हुई हैं बहुत सारा सामान के गत्ते बने हुए हैं और डब्बे भी कुछ रखे हुए हैं।

मकान के ऊपर टंकी ओंकी रखी हुई है और तार इधर से उधर निकले हुए हैं बहुत सारी बाइक भी खड़ी हुई हैं।

उस तरफ भी कुछ पन्नी मे पैक रखा हुआ। बैलून भी लगे हुए नीले सफेद कलर के लगे हुए हैं।

गेट लगे हुए हैं और एक छोटा गेट इधर लगा हुआ बड़ा गेट भी लगा हुआ है।

और एक स्कूटी भी इधर पीछे की तरफ खड़ी हुई है और इधर एक बाइक खड़ी हुई है और छोटे छोटे दो पेड़ भी खड़े हुए हैं।

यहां पर भी एक तालाब जैसा दिखाई पड़ रहा है तालाब के ऊपर जाल जैसे सीढिया जैसी बनाई गईं जिसमें रास्ता बना हुआ है।

अच्छा लग रहा है और जो नीले कलर की सीढ़ियां भी बनाई गई हैं इस तरफ एक रास्ता निकाला हुआ है।

होटल में कुछ चार पांच पंखे भी जल चल रहे हैं और लाइट्स भी जल रही हैं।

बहोत सारे डंपर दो खड़े हुए हैं और जो एक लाइन जैसे निकली हुई है।

यहां पर भी बहुत सारी सब्जियां कई प्रकार की रखी हुई हैं बोरियों में भी कुछ सामान रखा हुआ।

कुछ बोरियों में भी सामान कुछ एक बोरि में मिर्चें भी दिखाई पड़ रहे--

इस रास्ते अह की तरफ थोड़ा रोड कटी हुई है जिसमें थोड़े थोड़े खुर्रे भी दिखाई पड़ रहे हैं और लिप्टिस के भी पेड़ खड़े हुए हैं।

और यहां पर भी एक खिड़की खिड़कियों के अंदर कुछ आदमी निकाल रहा है जीसमें खाना बना रखा--

और उधर को सामान भी पड़ा हुआ एक टीन भी पड़ी हुई है और पेड़ भी पड़े दिखाई पड़ रहे हैं खुला आसमान में बहुत सारे मकान भी बने हुए हैं।

ये और इसमें जो टेंट लगी हुई है वो हरे कलर की नजर आ रही है।

कुछ बेड पे कपड़े भी पड़े हुए एक दो जोड़ी चप्पले भी पड़ी हुई है।

और नीचे की तरफ बहुत सारे टाइल्स जो सफेद कलर के हैं पीछे की तरफ बाउंड्री खींची हुई है।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

यहां पर एक कमरा दिखाई पड़ रहा है इस कमरे में कमरे में बहोत सारे सोफे पड़े हुए हैं जो नीले कलर के हैं और तकिया भी बढ़िया पड़ी हुई है।

आसमान खुला नजर आ रहा है आसमान में वह हल्का सा सूरज निकला हुआ है।

यहां पर भी एक छोटा सा रूम दिखाई पड़ रहा है इस रूम में दो कुर्सियां पड़ी हुई हैं एक तख्त भी पड़ा हुआ है।

अ टेक्टर की एजेंसी दिखाई पड़ रही है। इस टेक्टर में चार पान छह टेक्टर खड़े हुए हैं।

ट्रैक्टर ओ नीले कलर के है नीचे फर्श पड़ी हुई बिल्कुल साफ एकदम सफाई बहोत है।

यहां पे एक चौराहा जैसा नजर आ रहा है इस चौराहे में बहोत सारे लोग खड़े हुए है।

या एक ब्यूटी पार्लर जैसा दिखाई पड़ रहा है इसमें दो कुर्सियां भी चॉकलेट कलर की पड़ी हुई है।

एक शीशा भी लगा हुआ है दो इसमें बल्ब सफेद कलर के नजर आ रहे हैं।

सामान भी कई प्रकार का रखा हुआ है जैसे आचार आचार तेल वेल बिस्किट और साबुन पानी सब कुछ रखा हुआ--

यहां पर भी एक जाल जैसा वो बना हुआ जिसमें शुगर बंद हैं दो शुगर बैठे हैं और तीन चार लोग जानकारी पड़ताल कर रहे हैं।

और एक बाउंड्री खींची हुई है उसपर भी एक लिख लिखा हुआ है।

उधर भी बहोत सारा समान खानों में भरा हुआ है और एक ट्रॉली दिखाई पड़ रही है इसमें सारा सामान भर के जाता है एक बोरी है बोरी में भी कुछ सामान रखा हुआ है।

टुकड़ों में बटे हुए हैं जिनमें बाटी भी बनी हुई है व बहुत सारे पेड़ भी दिखाई पड़ रहे हैं।

और एक आदमी खड़ा है जिसने बैग डाल रखी है एक स्वेटर भी पहना है मफलर भी बांध रखा है और इसमें कांच का दरवाजा लगा हुआ है।

कूड़ा भी पड़ा हुआ है और इधर शटर एक लाल कलर का लगा हुआ है और लाइट्स भी जल रही है ऊपर हरे रंग का पुता हुआ है।

इसमें बहोत सारे पत्ते पड़े हुए हैं एक आदमी है इसका हाथ दिखाई पड़ रहा है।